चांद और तारा बना हुआ है और ये बिल्डिंग पुरानी लग रही है।

ये तस्वीर बुद्ध की मंदिर की ही है जहाँ पर बहोत सारा गोलाकार घंटा सा नज़र आ रहा है यहाँ पर बुद्ध बुद्धिष्ट भाषा में कुछ लिखा भी गया है।